जो सफेद रंग की गाड़ी है ऊपर से बिजली के खंभे भी गए आसपास से बहुत सारे गाछ बने हुए यहां पे एक लोहे की रेलिंग भी बनी हुई है यहां पे कुछ लोग खड़े है कुछ लोगों की बाइक खड़ी है यहां पे एक ऑटो रिक्शा भी खड़ी है ऑटो रिक्शा रंग काले रंग का ऑटो रिक --

पेट्रोल पंप को लाल हर लाल नीले सफेद रंग से रंग किया गया है नीचे बहुत सारी गड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप पे गाड़ी भी खड़ा किया गया है जो सफेद --

यहाँ पे एक बच्चा एक पार्क में खड़ा है यहाँ पे एक बड़ा सा पार्क है जिसपे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है पार्क में बहुत सारे फूल वृक्ष लगाई गई है तरह-तरह के रंगीले-रंगीले फूल यहाँ पे लाल सफेद गुलाबी रंग के फूल यहाँ निकले हुए हैं साथ ही साथ यहाँ पे एक पानी की घट भी --

दुकान के बाहर चाकलेट केक बिस्कुट ब्रेड और केटबरी के डब्बे रखे हुए है और या फिर चिप्स की पैकेट भी झूली हुई है।